बहोत सारी बुक्स है। ये बुक स्टोर लग रही है।

ग्लूकोस वॉटर लगाने का स्टैंड है विंडोज है।

बड़ा शेड है टंग उ पस पछरा मारा य छे से ---